मलवा पड़ा हुआ दिखाई दे रहा है|

नीचे कुछ कुर्सियां भी रखी दिखाई दे रही हैं। कुछ --

घर पे बहुत-सी लाइटें लगी हुई दिखाई दे रही हैं।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

बन्दर खड़े हुए दिख रहे हैं। आसपास शेर भी खड़े हुए दिखाई दे रहे हैं।

कुर्सियों पर कुछ लोग भी बैठै हुए भी दिख रहे हैं। ऊपर बहुत-सी लाइटें भी लगी हुई दिख रही हैं।

पुल के सामने एक और पुल बना हुआ है।